गाड़ी का सीन है देखिए कितना ही गजब है। बोहोत ही ऑसम का बात है‌। रिक्शा का पार्किंग है। यहां पर अनेक तरह का गाड़ी मिलता है जाने के लिए। आप लोगों को मैं इसलिए बता रहा हूं।

हैलो गाइस ये आप लोग देख रहे होंगे यह एक हाथी है। देखिए हाथी का सवारी तो आजतक मैंने भी नहीं किया है। लेकिन देखिये इस बन्दे ने हाथी की सूंढ़ पर बैठा हुआ है।

हैलो गायस आप लोग को में ऑटो स्टैंड के बारे में बता रहा हूँ देखिये ऑटो स्टैंड बहोत ही बढ़िया है देखिये ऑटो मतलब यह नए तरिके का ऑटो कया करा जाता है और ये ऑटो स्टैंड भी है और ये पार्किंग भी है देखिए आप --

आज की डेट में बुक स्टोर बहुत ही सारा खुल गया है लेकिन ये एक दुकान सही है आप बुक लीजिये ये बहुत ही अच्छा कम दाम में बुक दे रहा है आप लोग को आप लोग समझिए बुक के बारे में मै बता रहा हूँ।

ऐसा होना चाहिए हर एक जगह गुरुद्वारा होता है। लेकिन ये यहाँ का बहुत ही फेमस चीज है और ये बहुत ही बढ़ियाँ है बहुत ही ऑसम है।

ये बहुत ही बहुत ही चीज है इसके बारे में आप लोग को आप लोग को में बता रहा हूँ| ये बहोत ही गजब चीज है आप लोग देखिये आप लोग बहोत ही अच्छा है| आप लोग को हर एक चीज पहुचाना चाहता हूँ गायस |

एक बहुत ही मस्त बना है लेकिन आप लोग जान ही गये है हर एक चीज मै आप लोगो के पास पहुँचा रहा हुँ इसलिए क्यूंकि आप लोगो के पास मैं इसलिए पहुँचाता हुँ क्यूंकी आप लोग मैं जानता हुँ आप लोग बहुत ही पीछे हैं आगे की डेट मै आप लोगो को बहुत आगे पहुंचा --